ये एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है जो लंबी बनी हुई कतार में है ऐसा लग रहा है कहीं का विश्वविद्यालय लग रहा है ।

कार दिखाई दे रही है जिसके सामने से दोनो इंडिकेटर जलते हुए दिखाई दे रहे हैं इसमें लाल कलर की पट्टी लगी हुई है यहां है।

एक दुकान है इसमें पाँच पट्टी बनी हुई है पाँच पट्टी बनी हुई है पट्टियों का रंग पुतीं हुई हैं नीले कलर से और है सफ़ेद कलर से फर्श है ऊपर सफ़ेद कलर है।

कुछ विभिन्न प्रकार के सामान रखे हुए हैं पैकेट के पैकेट रखे हुए हैं कुछ लाल है कुछ --

दुकान दिखाई दे रही है जो किराना स्टोर के जैसी लग रही है पुरे बड़े हॉल में लगी हुई है एक गेट लगा हुआ है वहाँ पे एक आदमी खड़ा हुआ है बहुत सारे फुगे फुले हुए--

लगे हुए हैं रंग बिरंगे फुगे हैं ऊपर फर्श का कलर नीला है वो लाइट जलती दिखाई दे रही है इसमें पोल्स दिखाई दे रहें हैं।

ये लाल कलर का मंदिर दिखाई दे रहा है इसमे कलर लाल है खंबे लगे हुए हैं बहुत बड़ा पीपल का वृक्ष लगा हुआ और बिजली के खंभे लगे हुए हैं।

दुकान दिख रही है जनरल स्टोर की दुकान दिख रही है इसमें चार पांच रेक बनी हुई है रेको का कलर पट्टी में कलर दिखाई दे रहा है वो लाल रंग का है इसमें विभिन्न प्रकार के पाउच रखे हुए है।